कुछ गाय वगैरा बैठी हुई और बहोत सारी खड़ी हुई है और इधर से उधर कुछ टहल रही है।

एक होटल है यहां पे इस टाइम ये होटल बंद और इसके आगे बड़ी सी टीन पड़ी हुई है।

यहां तहां पंखे लगे हुए हैं और यहां पे एक दो खिड़कियां लगी हुई हैं।

गुलदस्ते रखे हुए हैं नीचे फर्श पड़ी हुई है।

छोटे हैं और कुछ पेड़ बड़े हैं और यहां पे छोटी छोटी सी घास हुई है।

इसके चारों ओर से बंद है और इसके चारों ओर से बाउंड्री बनी हुई है।

एक से ज ज्वेलरी की दुकान है यहां पे सोना और चांदी वगैरा मिलता--

और यहां पे एक बड़ा सा लोटा रखा हुआ है जो बेंच के उपर रखा हुआ है और यहां पे पंखे लगे हुए हैं।

एक स्विमिंग पूल है यहां पे बहुत सारे लोग नहाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और यहां पे कुछ खेल खिलौने भी बने हुए हैं।

और यहां पर रेड कलर की कुर्सियां पड़ी हुई है नीचे फर्श पड़ी हुई है ऊपर लाइट लगी हुई है।